कुछ लोहे की रड दिख रही हैं कोई कन कन्स्ट्रक्शन साइट है वहाँ का मैनेजर दिख रहा है जो की काग़ज़ पकड़े पेन पकड़े खड़ा हुआ है।

ब्रिज के नीचे कुछ खम्बे दिखाई दे रहे है डेकरेटेड घास दिखाई दे रही है पीछे पेड़ दिखाई दे रहे हैं बादल दिखाई दे रहा है।

एक चर्च दिखाई दे रहा है चर्च का गेट दिख रहा है साइड में एक टेबुल दिख रही है टेबल का पीछे दिख रही हैं।

कुछ लोग अंदर जा रहे हैं एक कार्पेट दिख रहा है एक चिप दिख रही हैं।